इसके ऊपर साबुन लग रखी है।

यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है मास्क लगाओ--

जिसने नीले कलर की बुशर्ट पहनी है।

नीला रंग हो रहा है गेट पे पीछे--

और एक छोटा गेट है।

एक बैठा है पैर के--

यहां पर एक बहोत बड़ी नदी है।

यहां पर बहोत सारा हरे भरे पेड़ है।

इसके आगे नीला सा ड्रम है।

यहां पर घासक भी है उग रहा उगा रखा है।

बहुत सारा कीचड़ हो रहा है।

दो बैगनी कलर के पर्दे हैं एक गेट है।

यहां पर बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है।

परदे लगे हैं लाल रंग के।

यहां पर एक आदमी खड़ा है जो कि फोन चला रहा है।

कुर्सी रखी हुई है यहां पर आदमी चल रहे है।

नीचे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इसके आगे बहोत सारी बाइकें है यहां पर इस पे पीला रंग हो रहा है।

ओ गमले टंगे हुए है ऊपर एक लाइट लगी हुई है।

यहां पे चार पांच पेड़ है।

तीन चार लम्बे खड़े हैं।

पीछे में दो तीन पेड़े है।

इसके अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी चीजें रखी हुई है।

डेकोरेशन का काम चल रहा है।

जिस पर कुछ लिख रहा है।

हॉस्पिटल में एक ए_सी लगी हुई है।

जो ऊपर पाइप लगा रहा है।

नीले पर्दा है और नीचे पे हर पर्दा बिछ रहा है।

काले रंग की ग्रिल है।

यहां पर पीला रंग हो रहा है दीवारों पर।

यहां पर बगल में घास उग रहा है।

पीछे मे बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

यहां पे एक गाड़ी खड़ी है चार्जिंग वाली।

और यहां पे लाल रंग हो रहा है। यहां पे पीला रंग हो रहा है।

ऊपर लिख रहा है शामली।

और यहां पे सड़क है।

ऊपर एक ट्रैक्टर है जे_सी_बी है।